और मुझे यहां पे योगा कर नजर आ रहे बहुत सारे।

मुझे दुकान के अंदर बहुत सारे टायर्स भी दिख रही है।

और मुझे गाड़ी की ग्रीज में बहुत सारी गाड़ियां भी दिख रही है।

कुछ पिंक कलर की कुछ रेड कलर की कुछ पर्पल की

मुझे यहां पे एक पौधा और दो लैपटॉप भी दिख रही है।

मुझे यहां पे बहुत सारे लोग दिख रही है।

और मुझे यहां पे बच्चे पोज देते हुए भी नजर आ रहे हैं।

और मुझे ऊपर सीलिंग पे एक पंखा भी नजर आ रही है।

और मुझे गेट के पीछे बहुत सी सुंदर सी एक घर भी दिख रही है।

मुझे यहां पे कुछ आलू का पराठा दिख रही है।

मुझे यहां पे एक बस दिख रही है।

मुझे बस के अंदर पर्दे भी नज़र आ रही हैं।

और मुझे यहां दो लोग भी दिख रहे हैं।

और मुझे यहां पे बहुत सारी टेबल्स चेयर भी दिख रही है।

ये यहां पे गाड़ी की चक्का भी दिख रही है।

और मुझे यहां पे चार चेयर भी नजर आ रही है।

मुझे यहां पे जमीन पे कुछ कॉर्न्स भी दिख रही है।

मुझे यहां पे एक रोबोट दिख रही है पानी के ऊपर।

रोबोट के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

और मुझे यहां पे सन सेट होते हुए भी दिख रही है।

मुझे यहां पे कुछ लाइट सेम जैकेट दिख रही है ऑरेंज कलर के।

मुझे यहां पे एक फैक्ट्री नजर आ रही है।

मुझे यहां पे कुछ टीना कुछ लोहे भी दिख रहे हैं।

और मुझे यहां पे एक इंसान भी नजर आ रही ही है।

मुझे यहां पे एक सिस्टर भी दिख रही है।

और मुझे यहां पे बहुत सारी चेयर्स भी दिख रही है।

और उसके आगे एक क्रिसमस ट्री दिख रही है।